सामने ये तखत पड़ा हुआ है उसपे एक जाली दार रखा हुआ है।

और उसके आगे और भी लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं।

एक ऊपर है एक नीचे और इसमें सामने नीचे घास दिखाई दे रही है।

जो अं बाहर भी हैं अंदर भी हैं और तीन गेट हैं।

जो बैग टांगे हुए हैं और ये एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

और दीवाल पे अलमारी पे ये सामने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

और रस्सी भी लगी हुई है पानी खींचने वाली।

ये एक बहोत बड़ा घर है जिसमें तीन गेट लगे हुए हुए हैं।

रोड के बगल में पेड़ है उसमे पेंटिंग लगी हुई है वाइट कलर की है रेड कलर की है।

इसमें गेट लगा हुआ है। गेट के अगल-बगल खंबे हैं उसमें लाइट रखी हुई है।

और शटर भी लगा है जो नीले कलर से पेंट है।

इस फोटोस में चेयर पड़ी हुई हैं और स्टूल रखा हुआ है।

इस फोटोस में बच्चे और टीचर खड़े हुए हैं।

और जमीन में बहोत सारे फूलों पड़े हुए हैं।